और लाल कलर का कुछ बाल्टी वगैरा भी दिखाई दे रही है।

जिस पर अलग अलग प्रकार की ड्रेसे वगैरा मिलती है।

और कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं कुछ लोग बैग पकड़ के खड़े हुए हैं।

जिसपे एक ग्रे कलर का सटर लगा हुआ है।

सामने एक कमरा सा है जो कि जिम का लग रहा है।

जिसमें दो लड़के खड़े हुए है एक ने नीले रंग की पेंट और ब्लैक कलर की बनियान पहनी हुई है।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

और एक मूर्ति पड़ी हुई है और हरे हरे फ्लावर से लग रहे--

और खाने पीने की फोटो पिक्चर वगैरा लगा रखी है।

में व्हाइट कलर का कलर कर रखा और वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

सामने एक बहुत बड़ा मैरिज गार्डन दिखाई दे रहा है।

और वहां पर दो मशीनें पड़ी हुई हैं जिनका रंग नीले रंग का नीले रंग का है और नीले रंग का एक जाली टाइप गेट लगा हुआ है दो आदमी बैठे हुए हैं।

और दो आदमी खड़े हुए हैं और कार खड़ी हुई है।

मंदिर के पास एक पुजारी खड़ा हुआ है।

और काफी सारी कन्याओं को बिठाके उनसे पूजा करवाई जा रही है।

दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जो कि वाइट कलर का है।